बैठी हैं जिन्होंने रंग बरंगे कपड़े पहने हुए हैं एक तरफ दीवार है जिसके ऊपर वाला हिस्सा सफेद और नीचे वाला हिस्सा लाल है एक तरफ दरख्त भी लगे हुए हैं जिनका रंग सब्ज है।

जिनका रंग नीला है अमारत के बहर एक हाथ बंदी है जिस--

जो किताबों का मुताल्या कर रहे है। ये कुर्सियां जो--

लेटा हुआ है जिसका रंग हल्का भूरा है। एक लड़का जो दर्द के साथ--